ऊपर चम्मच और बहुत सारे--

यहाँ पर बस रूकती है और सवारी यहाँ पे चढ़--

आग जल रहा है साह लोहे का कारखाना है यह--

और दीवल जो है सफेद कलर से पोताई किये गए है इस तरफ का आधा--

एक पीला रंग का शर्ट है लाल रंग का शर्ट है ब्लू रंग का शर्ट है।

यहाँ पे बहुत सारी पुस्तके है ।

और यहाँ पे पेड़ है और --

यह एक टेबल है टेबल मे गिलास है और बोतल--

काटा वाला चम्मच और एक सिंपल चम्मच--

और यहाँ पर बहुत सारे टेबल है जिसमे खाना खाह ने के लिए है और इ --

और दो औरत है और इन लोगो को स है गमला पक हैं एक यहाँ पर--

यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर पिंक कलर से लिखा हुआ है।